और यहां पर कुछ लाइट --

और यहां कुछ लोग भी--

हैं यहां पर कुछ झूले हैं।

यहां पर एक जिम है।